यहा पर अम्म एक अ ओफ बील्डींग है और यहा पर एक व्हाईट कलर की कार खडी हुई हे ओर एक ब्लू कलर कि कार खडी हुई है।

नीचे मेज पर सफ़े सफ़ेद और लाल कलर की चादर बिछी हुई है।

यहाँ पर अ कन्स्ट्रक्शन हो रहा है| बहुत सारी मुरण पड़ी हुई है और सिमेन्ट है और ईटे है और आस-पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक जिम है और यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है और यहाँ पे जिम का समान रखा हुआ है।

यहाँ पर एक जिम है और जिम का समान रखा हुआ है कुछ लाल कलर का है कुछ काला और कुछ पीले कलर का --

यहाँ पर एक जिम हैं और जिम में दो - तीन आदमी कसरत कर रहे हैं।